इस फोटो में मुझे लोहे का बड़ा बेड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी बसे दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारी आ बाइक और कार दिखाई दे रही हैं।